यह एक सैलून है जहा पर एक आदमी अपना--

यहाँ पर मेला लगा हुआ है जहाँ पर कुछ बच्चे खिलोने पर झूला झूल रहे है और यहाँ पर--

एक पाठशाला है यहाँ पर टेबल पर काफी सारे पन्नियों में कुछ रखा हुआ है।

यह एक दुकान है यहाँ पर काफी सारी पैकेट्स तार पर तंगी हुई है एक टेबल है जिस पर--

पीछे आपको एक टेबल भी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको दो लोग दिखाई दे रहे है।